और इस दुकान पर बहोत सी कुर्सियां रखी हुई हैं।

किसी दुकान का बड़ा सा गोदाम है।

इस फोटो में मुझे देख कर--

जिस रूम में दो बेड भी रखे हुए हैं।

बहोत से लोग बैठे हुए हैं।